यहा पर आजकल एयरटेल ऑफिस मे पहले सिर्फ फोन का रीचार्ज मिलता था पर आज डिश मिलता है सेटअप बॉक्स मिलता है हमे इसके अलावा टी_वी वगैरा सारे ब्राण्ड्स यहा पर मिल--

पर दरमियान मे पिंजरे जैसा बहुत ही आकर्षित कर रहा है यहा पर झूला है जहा पर लोग बैठे--

चित्र में हम देख सकते है की यहाँ पर एक पार्क मौजूद है जहाँ पर कई सारे लोग आते जाते नजर आ रहे है ये पार्क है जहाँ पर दरम्यान में--

इस चित्र मे हम देख शकते है कि याह पर एक हमे तोफे ह कि दुखान दिखाई दे रही गिफ्ट सेंटर जहाँ पर हमें--

इस चित्र मे हमे एक दुकान दिखाई दे रही है खूबसूरत सी जहा पर हमे कई सारे खाने की चीजे मिल जाती है ये हम देख सकते है यहा पर किताबे पेन वगैरा भी मिल जाता है और यहा पर लूडो गेम्स जो गेम्स होते है गाड़ी मे --

इस चित्र मे हमे एक अह पानी का तालाब नजर आ रहा है नीचे से जो के पानी बड़ा ही अह अच्छा है। पर ये हरा हरा सा पानी है।

बाकी के दीवार मे मिकी माऊस और यहाँ पर खाने के लिए बिर्याणी प्लेट मे थाल मे मौजूद नजर आ रही है।